उसके ऊपर एक घर है जिसमें बहुत सारे खिड़कियां में पर्दे लगे हुए हैं।

जो ग्रीन एवम ब्राउन कलर के हैं।

उसके बगल में एक बोर्ड है।

बहुत सारे सोने एवं हीरे और मोती रखे हुए हैं।

इसपर लिखा हुआ है कार शृंगार वाशिंग सेंटर ।

इस बोर्ड के नीचे एक स्टूल है जो ब्राउन कलर का है।

परदे लगे हुए हैं जो रेड कलर के हैं।

टेबल भी है जो स्टील का है।

उसके बगल में एक दरवाजा है।

इसके ऊपर ये बहुत सारे बैलून पर्दो में चिटकाया गया है।

इनके अगल बगल बहुत सारे मैट से घेरा गया है।

इसके अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो हरे भरे हैं।

उनके ऊपर एक खंभा लगा हुआ है जो माथे पर है।

चित्र में एक दुकान का दृश्य दिख रहा है।

इस काउंटर पर दो सीसीटीवी कैमरा को दिखाने वाला एक कंप्यूटर है।

जो साड़ी पहनी हुई --

इस रोड पर भी बहुत सारे लेडिस खड़े हैं।

उसके बाहर एक बोर्ड टंगा हुआ है।

बगल में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

इस चित्र में एक रोड का दृश्य दिख रहा है।

के अगल बगल भी बहुत सारे सूखे पेड़ हैं।

जो बोल है और वो वाइट कलर के हैं।

इसके अगल बगल बहुत सारे जमीन सूखे पड़े हैं।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

बहुत सारे मशीन रखे हुए हैं।

बहुत सारे है जो वाइट एवं ग्रे कलर के हैं।

इसके बगल में बहुत बड़ा एक मकान है।

चित्र में एक रूम का दृश्य दिख रहा--

इसके बगल में एक बोर्ड लगा हुआ--

उसके बगल में भी एक कंप्यूटर है जो वाइट कलर का एवं ब्लैक कलर का है।

इसमें बहुत सारे लोग खड़े एवं बैठे हुए हैं।

कवड का कलर व्हाइट एवं ब्लैक है।